ये बहुत ज्यादे पेड़ पौधे लगे हुए है नीचे एक बस स्टैन्ड नजर आ रहा है जहाँ पर ढेर सारे बस टेम्पो ऑटो टे ठेहरे हुए है।

चित्र में दो बस मौजूद हैं दूसरी ओर बहुत सारे लोग कार ऑटो भी मौजूद हैं बस एक बस पर महेंद्रा लिखा हुआ हैं दूसरी बस पर भारत लिखा हुआ हैं।